पानी का बोटल भी लगा हुआ है इसका मतलब यह एक होटल में चाय पी रहे हैं दो लोग --

और एक कार भी नज़र अ रहा है और कार के अंदर कुछ लोग भी थरे हुए हैं।

और उसका मतलब ये एक बड़ा ऑफिस नजर आ रहा है और वाइट कलर है |

इस चित्र में एक दो तीन घर नजर आ रहे हैं और इस घर के अंदर कुछ शॉप भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र मे नजर आ रहा है।

इस चित्र में बेकरी नजर आ रही है । उसे बेकरी के अंदर केक के बैनर नजर आ रहे हैं बलूंस टोपी भी नजर आ रहा है । इसका मतलब यह है कि यह दुकान के अंदर बेकरी है ।